कुछ कला तराशी गई है और पूरा गेट लौह से बना हुआ है और इसपे अभी पेंट नहीं हो रखा है। नया ये गेट है।

ये जो फोटो आपको नज़र आ रही हैं। ये पार्क की हैं और पार्क में आपको एक माली नज़र आ रहा होगा जोकि घास काट रहा हैं और --

ये एक कॉलेज का जो आप गेट नजर आ रहा है ये इंजीनियरिंग और टेक्नॉलजी और मेडिकल का है।

एक जो फोटो आपको नज़र आ रही हैं। यह गुरूद्वारे की फोटो हैं और बहोत ही सुन्दर जो मंदिर है अन्दर से --